एक सड़क जा रही है सड़क पर बहुत सारे--

खाने का इंतजाम किया गया है टेबल पर डिसेस सजाने के लिए--

एक क्रेन ऊपर से पहाड़ियों पे से होकर--

बड़े-बड़े पेड़-पौधे हैं कुछ घास भी है.

इस चित्र में एक बिल्डिंग दिख रही है।

आसमान में हल्के-हल्के बादल हैं सुबह का वक्त लग रहा है.

इस चित्र में एक शोरूम दिख रहा है।

इस चित्र में एक बड़ा सा घर दिख रहा है ।

कुछ गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं जो बच्चे उसकी गाड़ियों की धुलाई कर रहे हैं।

क्रिकेट खेल रहे हैं एक बॉलिंग कर रहा है और एक अंपायरिंग कर रहा है।

पाउच पाउच वाले लड़े लटक रही हैं।

पेड़ भी काफी बड़े हैं अच्छे हैं ।

नाई की दुकान पर बहुत सारी कुर्सियां लगी हैं ।

एक आदमी शीशे के पास सामने खड़ा होकर अपनी सेल्फी ले रहा है दूर से एक पानी की बॉटल दिख रही है।

दरवाजा पे पेंट दिख रहा है।

पंखे दिखाई दे रहे हैं कुछ कुर्सियां भी रखी हुई हैं खिड़कियां हैं।

गेट के अंदर से एक गमला भी दिख रहा है।

पार्क के साइड में कुछ पोल से बने हैं जिस पर बच्चे खड़े होकर मस्ती कर रहे हैं.

और आजू-बाजू भी पेड़-पौधे हैं आसमान बिल्कुल साफ है धूप खुल रही है।

आजू-बाजू बहुत सारे हरे-हरे पेड़ भी हैं।

एक आदमी पैदल जा रहा है कुछ आदमी गाड़ी के पास खड़े हुए हैं।

एक बहुत बड़ा कमरा सा है जिसमें एल_सी_डी भी लगी है पीछे लाइट्स लगी हैं घड़ी दिखाई दे रही है।

हल्के-हल्के से बिल्कुल छोटे-छोटे से बादल दिख रहे हैं।

जिसके दोनों पैरों पर चोट लगी हुई है।